यहां पे एक पेट्रोल पंप दिख रहा है जो भारत पेट्रोल पंप है।

और एक आदमी जो पैसे गिनते हुए दिख रहे हैं।

और उसके पेट्रोल पंप के पीछे की साइड में एक लाइट दिख रही है और एक पेट्रोल पंप का ऑफिस भी दिखा रहा है।

इस चित्र में एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जहां पे बिल्डिंग का काम चल रहा है।

बिल्डिंग के नीचे के साइड में पार्किंग एरिया में एक बाइक दिख रही है।

दुकान की दूसरी साइड में एक साइकल रखी हुई है।

इस चित्र में एक किला दिख रहा है किला के पीछे एक मंदिर दिख रही है।

इस चित्र में एक बड़े से चट्टान के ऊपर से झरना गिर रहा दिख रहा है।

झरने के ऊपर की साइड मे बहोत बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे है।

और एक लड़का हैवी वेइट लिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पे एक शादी का हाल दिख रहा है हाल में बहुत छारी कुर्सियां रखी गई है।

और टेबल पे दो टिशू पेपर एक चश्मा रखा हुआ है।

और स्टेज के बाजू में ही एक दो कूलर लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक नदी दिख रही नदी में बहोत सारा पानी भरा हुआ है।

और दूसरी दो नावे सिंगल सिंगल लोग बैठे हुए और नाव के पीछे की साइड में बहोत बड़ी झाड़ी दिख रही है जंगल दिख रहा है।

और एक लाइट बल्ब दिख रहा है मस्जिद के सामने रेलिंग लगी हुई दिख रही है।

यहां पे एक शादी वाला हॉल दिख रहा है उसमें बहुत सारे कुर्सी लगी हुई हैं।

और हॉल के में ए_सी भी लगी हुई है और लेफ्ट साइड में एक कूलर भी रखा हुआ है स्टेज पे दो सोफे और एक सिंहासन रखा हुआ है।

बिल्डिंग की सीढ़ी के पास एक महिला बैठी हुई दिख रही है।

और बिल्डिंग के सामने पेड़ों के नीचे एक फोर वीलर गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है।

फॉर व्हील गाड़ी के सामने एक टू व्हीलर भी खड़ी दिख रही है और लेफ्ट साइड में कुछ बॉक्सेस रखे हुए दिख रहे हैं।

यहां पे एक सलून की दुकान दिख रही है।

एक राइडर साइड में बैठा हुआ है जिसने सबने पीले कलर की जर्सी पहनी ओ है।

यहां पे सब्जी का ठेला है सारी सब्जियां केले के पत्तों पर रखी गई है सारी सब्जियां एकदम ताजी और हरी भरी है।

कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट ग्लास की बोतल में प्लास्टिक की बोतलों में रखे गए हैं सब अलग अलग कलर के ब्यूटी प्रोडक्ट रखे गए हैं।

यहां पे वाटर पार्क का काम चल रहा है।

इसमें काले कलर की बेंच रखी हुई है और दीवाल के दोनों साइड में नोटिस बोर्ड लगा हुआ है।

दीवाल के एक साइड में फायर सेफ्टी की बोटल रखी हुई है।

और एक महिला संवाद देती हुई दिख रही है।

वो हड्डियों के डॉ हड्डियों का डॉक्टर है और उसका नंबर भी दिया गया है इस बोर्ड पे --

और उनके कलर भी अलग अलग है और एक प्रोडक्ट का नाम है माइक्रो वी प्लांट ग्रोथ बूस्टर ।

इस चित्र में शोभा बढ़ाने वाले पौधे बहुत सारे पौधे दिख रहे हैं।

यहां पे एक ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड में तीन लड़के दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं दो लड़कों ने एक जैसे टी शर्ट पहनी हुई--

एक लड़के ने ब्लैक टी शर्ट पहनी है और हाफ पैंट में है।

यहाँ पे एक बाल काटने वाली दुकान दिख रही है। जो दुकान का नाम है डेनिम सैलून --

उसके बगल में एक बड़ी सी बाल्टी रखी गई है।

और इसमें रेड कलर का पोस्टर है जिसपे सलून का नाम लिखा गया है।

एक लड़का खड़ा हुआ भी दिख रहा है और उसके पीछे की साइड में एक छोटी सी सीढ़ी दिख रही है।